बैडमिंटन खेल रहे है एक साइड मे लड़की दिख रही है इधर लड़का है उधर दोनों लड़के है उधर लड़की है।

मिटाई वाली दुकानें जा पे बहुत सारी अलग अलग तरह की मिठाई रखी गई हुई है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी रखे गए हैं।

कोई स्टोर हैं अ जिसके अंदर व्यक्ति भी हैं बाहर सिक्युरिटी अंकल खड़े हैं स्कूटी खड़ी हैं बाहर बाइक खड़ी हुई हैं जहाँ और ऊपर भी कोई स्टोर लग रही हैं।

ये भगवान जी का मंदिर है जैसे उ म् म ओरेंज और---

एक पार्क या गार्डन टाइप है जहाँ पे बोहत सारे हरियाली हुई है जहाँ पे अ हरे-हरे रंग के पत्ते है और हरे-हरे रंग की कुछ मूर्तिया बनी हुई है।

शोरूम ये है जहाँ जिसके बाहर एक बाइक वाला इन्सान बाइक पे बैठा हुआ है उसके पीछे एक जन बैठा हुआ है उधर सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई हैं और एक बाइक खड़ी हुई हैं और शोरूम के दो गेट है।

यहाँ एक टेबल है और चेयर जहां पे खाने का मेनुए कार्ड भी रखा है।